बाहर बहुत बड़ा टावर दिखाई दे रहे हैं लाइटे दिखाई दे रही है।

पीछे एक पहाड़ के टाइप दिखाई दे रहा है और बादल दिखाई दे रहे हैं और एक लोहे का--

व्हाइट कलर के हैं और गाड़ियां खड़ी हैं।

छोटे छोटे कंक्रीट और पत्थर दिखाई दे रहे हैं और--